फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पे कुछ कुर्सियां पड़ी है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए है।

छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है बराबर मे एक बिल्डिंग और है जो कि नारगी रंग की है।

ऊपर एक नदी दिखाई दे रही है नदी के चारों तरफ छोटे-छोटे पौधे लगे हुए है।